बनी हुई है। रोड है। आदमी खड़े हुए हैं। टैक्सी खड़ी हुई है। ठीक है। उसके सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है। शीशा-फीशा उस पे सब लगे हुए हैं।

ये यह मार्केट है। मार्केट में गाड़ियां खड़ी है। दुकानें वगैरा खुली हैं और दो-तीन व्यक्ति भी खड़े हैं और जो है बाइक वगैरह खड़ी हुई है। साइड से भी शायद एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ।